जो कि एक गलियारे के चारों तरफ बने हुए हैं।

सामने मुझे बड़ा सा झंडा लगा हुआ दिखाई दे रहा है जोकी --

अंदर बहोत सारे लहसन के बोरे हैं।

दीवारों पे बहुत ही अच्छी पेंटिंग हुई है।